लिबर ऑफिस कैल्क में सेल्स के साथ कार्य पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रैडशीट में नम्बर्स टेक्स्ट टेक्स्ट के रूप में नम्बर्स दिनांक और समय कैसे एन्टर करें
फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करें
सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएँ
रोज़कॉलम तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें
हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू 1004 तथा लिबर ऑफिस सूट वर्ज़न 334 इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए पहले सीखते हैं कि सेल्स में डेटा कैसे एन्टर करें
हम अपनी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस फाइल को खोलते हैं
आप किसी भी विशिष्ट सेल में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं
सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड कि मदद से टेक्स्ट टाइप करें
डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट बायीं ओर अलाइन होता है
फॉर्मेटिंग बार पर अलाइन्मन्ट टैब पर क्लिक करके अलाइन्मन्ट बदल सकते हैं
इसे अन्डू करते हैं
अब स्प्रैडशीट में सेल आ1 पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि चुना गया सेल चिन्हांकित होता है
यहाँ हमने पहले की कॉलम हेडिंग टाइप की है
आईटीईएमएस हेडिंग के अंतर्गत हम कुछ आइटम्स के नाम टाइप करते हैं जैसे कि सैलरी हाउस रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल फोन बिल लॉन्ड्री तथा मिसेलेनियस
सेल में नम्बर्स एन्टर करने के लिए सेल पर क्लिक करें और नम्बर्स टाइप करें
नेगेटिव नम्बर को एन्टर करने के लिए या तो नम्बर के आगे माइनस चिन्ह टाइप करें या उसे कोष्ठक में रखें
डिफॉल्ट रूप से नम्बर्स दायीं ओर अलाइन होते हैं और नेगेटीव नम्बर्स के आगे माइनस चिन्ह होता है
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब हमारी पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस स्प्रैडशीट में सिरिअल नम्बर हेडिंग जोकि स्न द्वारा संबोधित है हम चाहते हैं कि प्रत्येक आइटम का सिरिअल नम्बर एक के नीचे एक रहे
अतः सेल आ2 पर क्लिक करें और 123 नम्बर एक के नीचे एक एन्टर करें
सिरिअल नम्बर को अपने आप से आने के लिए सेल आ4 पर क्लिक करें
सेल के दाएं कोने में एक छोटा सा काला बॉक्स दिखाई देता है
सेल आ7 तक इसे ड्राग करें और फिर माउस बटन छोड़ दें
आप देख सकते हैं कि सेल आ5 से आ7 तक आगे के सिरिअल नम्बर्स आ जाते हैं
आइटम्स के सिरिअल नम्बर एन्टर करने के बाद हम अब कॉस्ट हेडिंग के नीचे हर एक आइटम का मूल्य या कॉस्ट एन्टर करते हैं
अब हम सेल सी3 पर क्लिक करते हैं और हाउस रेंट के लिए रूपीस 6000 टाइप करते हैं
अब क्या करें यदि नम्बर के आगे रुपए का चिन्ह लिखना है
मानिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए रूपीस 800 एन्टर करना चाहते हैं अतः सेल सी4 पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
यह फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलेगा
पहला टैब नंबर्स है
यदि पहले से ही इसे चुना है तो इस पर क्लिक करें
कैटेगरी के अंतर्गत हम विभिन्न वर्ग देख सकते हैं जैसे कि नंबर परसेंट करेंसी डेट टाइम इत्यादि
करेंसी को चुनते हैं
अब फॉर्मेट ऑप्शन के अंतर्गत डाउन एरो पर क्लिक करें
यह विश्व के विभिन्न मुद्रा चिन्ह प्रदर्शित करेगा
ऊपर स्क्रोल करते हैं और इन्र रूपीस इंग्लिश इंडिया चुनें
डीफॉल्ट रुप से नीचे ड्रॉपडाउन में रूपी 1234 चुना गया है
आप दायीं तरफ छोटे से प्रीव्यू एरिया में इसका प्रीव्यू देख सकते हैं
आप्शंस के अंतर्गत हमारे पास डेसिमल प्लेसेस डेसिमल प्लेसेस को और लीडिंग ज़ीरोस को जोड़ने के लिए विकल्प है
ध्यान दें कि जैसे ही हम शून्य की संख्या बढ़ाते हैं फॉर्मेट में किया गया चयन बदल कर रूपीस 1234 डेसिमल ज़ेरो ज़ेरो हो जाता है और जो दो दशमलव स्थानों को दर्शाता है
ध्यान दें कि बदलाव प्रीव्यू एरिया में प्रदर्शित है
प्रत्येक हज़ार के बाद कौमा सेपरेटर जोड़ने के लिए थाउसेंड्स सेपरेटर पर क्लिक करें
फिर से प्रीव्यू एरिया में बदलावों को देखें
आप फोंट टैब पर क्लिक करके फोंट बदल सकते हैं
इसमें फोंट टाइपफेस और साइज
के लिए कई ऑप्शंस हैं
आप फोंट इफेक्ट्स और अन्य टैब्स में जाकर अधिक सीख सकते हैं
अगले ट्यूटोरियल में हम एलिग्नमेंट टैब के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे
ओक पर क्लिक करते हैं
800 टाइप करके एन्टर प्रेस करें
आप देखेंगे कि संख्या 800 दो दशमलव स्थानों के साथ रूपीस 800 द्वारा बताई गई है
अब सेल सी5 से सेल सी7 तक का चुनाव करते हैं
CTRL की को पकड़े रहिये और सेल जी2 को भी चुनें
ध्यान दें कि सभी चयनित सेल्स चिन्हांकित हैं
कोई भी चिन्हांकित सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स को चुनें
पहले जैसे समान ऑप्शंस को चुनें
ओक पर क्लिक करें
अब हम अन्य आइटम्स के सारे खर्चे एक के नीचे एक टाइप करते हैं
फोन बिल के लिए रूपीस 600 लॉन्ड्री चार्जेस के लिए रूपीस 300 और रूपीस 2000 मिसेलेनियस यानि अन्य खर्चों के लिए
अकाउंट्स हेडिंग के नीचे महीने की सैलरी रूपीस 30000 टाइप करते हैं
कैल्क में दिनांक एन्टर करने के लिए सेल को चुनें और डेट टाइप करें
आप दिनांक के एलिमेंट्स को फॉरवर्ड स्लैश या हाइफन से अलग कर सकते हैं या टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 10 ऑक्टोबर 2011
कैल्क कई प्रकार के डेट फोर्मेट्स को पहचानता है
वैकल्पिक रूप से आप सेल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन चुनें
कैटेगरी के अंतर्गत डेट चुनें और फॉर्मेट में से इच्छित फॉर्मेट चुनें
मैं 12 31 1999 चुनूँगा
प्रीव्यू एरिया में देखें
साथ ही फॉर्मेट कोड म् डिड और य्यी के रूप में प्रदर्शित है
आवश्यकतानुसार आप फॉर्मेट कोड बदल सकते हैं
मैं डिड म् और य्यी टाइप करूँगा
प्रीव्यू एरिया में बदलावों पर ध्यान दें
ओक पर क्लिक करें
कैल्क में टाइम एन्टर करने के लिए सेल को चुनें और टाइम टाइप करें
आप टाइम के एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं जैसे कि 10 कोलोन 43 कोलोन 20
वैकल्पिक रूप से आप सेल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन चुनें
कैटेगरी के अंतर्गत टाइम चुनें और फॉर्मेट में से इच्छित फॉर्मेट चुनें
मैं 13 37 46 चुनूँगा
प्रीव्यू एरिया में देखें
साथ ही फॉर्मेट कोड HHMMSS के रूप में प्रदर्शित है
आवश्यकता के अनुसार आप फॉर्मेट कोड बदल सकते हैं
मैं HHMM टाइप करूँगा
प्रीव्यू एरिया में बदलावों को देखें
ओक पर क्लिक करें
बदलावों को अन्डू करते हैं
कैल्क में टेक्स्ट नम्बर्स और डेट को कैसे लिखें यह सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि स्प्रैडशीट में सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे जाएँ
तो पहले हम देखेंगे कि एक स्प्रैडशीट में सेल्स के बीच कैसे जाएँ
आप किसी भी सेल पर पहुँच सकते हैं कर्सर से सेल पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि विशिष्ट सेल चिन्हांकित हुआ है
एक और तरीके से विशिष्ट सेल तक पहुँच सकते हैं वह है सेल रेफरेंस यानि सेल संदर्भ का उपयोग करके
नामे बॉक्स के दाहिने ओर काले रंग के डाउन एरो पर क्लिक करें
अब जिस सेल पर आप जाना चाहते हैं उस सेल का सेल रेफरेंस टाइप करके एन्टर प्रेस करें
आप नामे बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हैं मौजूदा सेल रेफरेंस को डिलीट करके आपको जो सेल रेफरेंस चाहिए वो टाइप कर सकते हैं और Enter प्रेस करें
अब हम सीखेंगे कि स्प्रैडशीट में एक सेल से दूसरे सेल के बीच कैसे जाएँ
कर्सर का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल के बीच जाने का पहला तरीका है
कर्सर का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करने के लिए आप सेल पर कर्सर ले जाएँ जहाँ आप चाहते हैं और लेफ्ट माउस बटन क्लिक करें
यह नए सेल पर ध्यान केंद्रित करेगा
यह तरीका उपयोगी है जब दो सेल काफी दूरी पर हों
एक और तरीका है Tab का उपयोग करके एक रो में अगले सेल पर जा सकते हैं
रो में पिछले सेल पर जाने के लिए Shift Tab प्रेस करें
कॉलम में अगले सेल पर जाने के लिए Enter प्रेस करें
कॉलम में पिछले सेल पर जाने के लिए Shift Enter प्रेस करें
अब हम सीखेंगे कि कैल्क में कीबोर्ड की मदद से अलग अलग स्प्रैडशीट्स में कैसे जाएँ
सक्रिय शीट की दाईं ओर की शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन कीज़ साथ में प्रेस करें
सक्रिय शीट की बाईं ओर की शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज यूपी कीज़ साथ में प्रेस करें
कर्सर का उपयोग करके भी शीट्स के बीच जा सकते हैं
इस पर विस्तृत जानकारी वर्किंग विथ शीट्स ट्यूटोरियल में मौजूद है
अगर काफी शीट्स हैं तो हो सकता है कि कुछ शीट टैब्स स्क्रीन के नीचे हॉरिज़ान्टल स्क्रोल बार में छुपे हों
यदि ऐसा है तो शीट टैब्स के नीचे बायीं ओर चार बटंस टैब्स को व्यू में स्थानांतरित कर सकते हैं
बदलावों को अन्डू करते हैं
अब कर्सर से संलग्न सेल्स को चुनने के लिए पहले एक सेल में क्लिक करें
अब लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके होल्ड करें
स्क्रीन पर कर्सर ले जाएँ और जब इच्छित सेल्स चिन्हांकित हों जाएँ लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें आप देखते हैं कि चुनी हुई सेल्स चिन्हांकित हुए हैं
अब विविध कॉलम और रोव्स जो कि संलग्न है उन्हें चुनने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें
अब Shift की को होल्ड करें
ग्रुप में आखरी कॉलम या रो पर क्लिक करें
अब विविध कॉलम और रोव्स जो की संलग्न नहीं है उन्हें चुनने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें
कंट्रोल की को होल्ड करें और सभी अनुवर्ती कॉलम्स और रोव्स पर क्लिक करें जब कंट्रोल की होल्ड कर रहे हों
विविध संलग्न शीट्स को चुनने के लिए पहली इच्छित के लिए शीट टैब पर क्लिक करें
अब आखरी इच्छित शीट के लिए कर्सर को शीट टैब पर ले जाएँ
Shift की को होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें
यह दो शीट्स के बीच सभी टैब्स सफ़ेद हो जाएंगी जो दर्शाता है कि वह चुनी गई हैं
आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी
अब विविध शीट जो संलग्न नहीं है उन्हें चुनने के लिए पहली शीट के लिए शीट टैब पर क्लिक करें
अब कर्सर को तीसरी शीट टैब पर ले जाएँ
कंट्रोल की होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें
चुनी हुई टैब्स सफ़ेद होंगी और आप जो कुछ भी करेंगे वह सभी चिन्हांकित शीट्स पर प्रभाव करेंगी
हम लिबर ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखा हैः कैल्क में नम्बर्स टेक्स्ट टेक्स्ट के रूप में नम्बर्स दिनांक और समय कैसे एन्टर करें
फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करें
सेल्स के बीच तथा शीट्स के बीच कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएँ
रोव्सकॉलम तथा शीट्स में कैसे चीजों को चुनें
व्यापक असाइनमेंट
स्प्रेडशीट practiceओडीएस को ओपन करें
सीरियल नंबर्स के अंतर्गत 1 से 5 तक सिरिअल नम्बर एक के नीचे एक लिखें
कीज़ के उपयोग से सेल्स के बीच जाएँ
सीरियल नम्बर में सभी आइटम्स को चुनें
दिनांक और समय के लिए कॉलम जोड़ें
फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का उपयोग करके उसमें कुछ वेल्यू एन्टर करें
निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का सार देता है
यदि आपके पास अच्छा बैन्ड्विड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं हम उन्हें सर्टिफिकेट भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contactspoken हाइफेन tutorialओआरजी पर लिखें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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट सकीना शेख द्वारा अनुवादित है तथा आईआई टी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद